सामने कपड़ो की दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पे (पर) बहुत सारे कपड़े रखे हुए नजर आ ।

पर का आसमान भी नीला दिखाई दे रहा है। नीचे दो टावर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जिसपे लाईटें लगी हुई भी नजर आ रहीं हैं। बोहोत सारी हरी घास लगी हुई दिखाई दे --

पर ऊपर एक पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही इस हाल में नीचे कार --

पेट बिछा हुआ है और बहुत सारी चटाई बिछाई हुई गई हैं। बोर्ड लगा है।

दीवार पर सफ़ेद कलर का पेंट दिखाई दे रहा हैएक कुर्सी रखी हुई नज़र आ रही है।

सामने एक रोड दिखाई दे रहा है जिसपे ऑटो रिक्शा जाते हुए दिखाई दे रहीं हैं सांत ही बोहोत सारे लोग मोटरसाइकल पे जाते हुए नजर आ रहें हैं। उ --

सामने एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है| एक नीला पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है | प्रकाशमान भी खुला दिखाई दे रहा है साथ ही पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक हॉल दिखाई दे रहा हैजहां पे सामने बोहोत सारे फ्लावर्स दिखाई दे रहे है। कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है। सामने दिखाई दे रही हैं जो की सफेद कलर दिखाई दे रही है। हॉल बहुत बड़ा दिखाई --

जिन ठेलों जो ठेलों पे आदमी बैठे हुए हैं ना कि कुछ सामान भर रहे हैं। सामने के रोड पे एक --

सामने गेट दिखाई दे रहा है जिस पे आपूर्ति विभाग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी कुण्डी में ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा है साथ ही खोला हुआ दिखाई दे रहा है।

हुए हैं। सर्किट लगी हुई दिखाई दे रही हैं। सर्किट में बहुत सारे रंग-बिरंगे कलर दिखाई दे रहे हैं। सामने का मै --

कुर्सी रखी हुई है जोकि गोल वाली कुर्सी नजर आ रही है। ऊपर का छत दिखाई दे रहा है जिसपे लाइटें लगी हुई नजर आ रही --

और यह केक बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। साथ ही यह केक सफेद और की क्रीम हरी --

सामने एक बोर्ड लगा हुआ है। जिस पे ए.टी.एम. लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एक पोस्टर लगा हुआ है। जिस पे टॉयलेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने दो कुर्सियां टेबल टाइप का रिक्शा दिखाई जाते हुए दिखाई दे रहा है। जिस पर लैडीसें बैठी हुई नजर आ रहीं हैं।